और आगे में ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है उसके बगल में टांगा हुआ है आर यह ब्लेक कलर यहाँ टेबल रखा हुआ है और ऐसी भी थोड़ा ऐसी भी दिखाई पड़ रहा है।

ये तो इंडियन ऑइल का पेट्रोल पम्प लग रहा है जिसके लिए एक पेट्रोल पम्प का ट्रक भी आया हुआ है दो ट्रक भी आया हुआ है और गाड़ी भी लगा हुआ है और बहुत सारे आदमी--

यह मॉल का सीन लग रहा है जिसमें बहुत कलर के अलग अलग नीचे के ड्रेस भी है और ऊपर की ड्रेस भी है जो बच्चे के है और सबका कलर अलग अलग है यह कोई मॉल का सीन लगा है।